और यहां पे कुछ झंडे भी लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत लंबी सड़क--

बहुत से पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं।

बहुत सा कपड़ा भी रखा हुआ है।

यहां पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगे खड़ी हुई है।

कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं।

और मुंह इनके सब के ढके हुए हैं।

पीले कलर की बसे भी खड़ी हुई है।

यहां पे बहुत सारी बिल्डिंगें भी है।